एक लड़का जो की नीचे गुफा बनी हुई है उसमें दिखाई दे रहा है जो की खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और कुछ लोग इधर-उधर टहल रहे हैं नहा रहे हैं और नीचे पानी है।

इस चितर किसी रेलवे स्टेशन का दिखाई दे रहा हैजो--

सामने बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है और किनारों पर मिट्टी दिखाई दे रही हैं और सामने आसमान मे बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लोग जो की बाहर मंदिर मे खड़े हुए दिखाई दे रहे है।